ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पर बहोत सारी लकड़ी की कुर्सी और मेज बनाए गए है और उधर देखिए इधर -

के सामने कंपलेक्स है इस में बहोत सारी शीशे लगे हुए है जो कि शीशे का रंग काला है और बीच में देखिए आसमानी है।

हेड लाइट लगी हुई है और यहाँ पर देखिए सामने से एक आदमी अंदर जा रहा है।

ये देखिए मैदान इस पे हरे घास उगे हुए है और अगल - बगल बहुत सारे घने पेड़ है और बीच में देखिए हैड लाइट लगी हुई है।

हाथ में किताब लिए हुए हैं और उन्होंने सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और जहाँ पर जो दोनों औरते हैं उन्होंने सर से ऊपर पे पल्लू रखा हुआ है।

ये सामने बहुत बड़ा सा मैदान है और जो कि यहाँ पर देखिए ये खुसो के घास यहाँ पे बिखरे हुए हैं और यहाँ पे देखिए चार-पांच हिरण है और यहाँ पे लकड़ी की कुछ--

काली जो मछलियां रखी गई है और यहाँ पर एक आदमी है जो की सफेद रंग का शर्ट पहने हुए है और गले में गमछा लपेटे हैं और उधर देखिए चेक शर्ट पहने हुए और मैरून पेंट पहने हुए--

और यहाँ पर देखिए कुछ औरत और आदमी बैठे हुए हैं कुछ औरत आदमी खड़े हुए हैं जहाँ पे आगे देखिए एक औरत खड़ी है जिसने--

के सामने आप घर देख रहै है जिसका दीवार का रंग अ क्रीमी रंग से किया गया है और अगल- बगल बहुत सारे घने पेड़ है और लेकिन ऐन नीचे --

ऐ_सी लगा हुआ है और यहाँ पर जो दीवार है वो सफेद रंग की दीवार है और नीचे जो फर्श है वो टाइल्स की लगी हुई है।

और सामने देखिए बिल्डिंग है जो कि स उसका दीवाल सफेद रंग से किया गया है उधर भी देखिए बहुत सारे--

के सामने मंडप दिख रहा है और यहाँ पर देखिए कुछ आदमी बैठे हुए हैं और कुछ औरत बैठी हुई है।

जिसमे की अ पंडित जी जो है वो सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए है और यहाँ पर जो कुछ औरतें है वो साड़ी पहनी हुई है और--

सामने दो आ रहा है जो की सफेद और नारंगी रंग से रंग किया गया है और यहाँ पर देखिए अगल-बगल गुलाबी रंग से दीवार--

और ये देखिए कुछ औरत और आदमी बैठे हुए हैं और वहाँ पर देखिए कुछ हरे घास भी हैं उधर--

के सामने बहुत लंबी सीढ़ी है और यदि अगल-बगल से लोहै की रेलिंग लगी हुई है और ऊपर देखिए टीने का शेड लगा हुआ है ।